दिखाई दे रही है और यहाँ रोड पर एक लेडीज भी खड़ी हुई है।

यहाँ एक चर्च है जहाँ पर आस-पास कई--

यहाँ एक रोड दिखाई दे रहा है और रोड के ऊपर एक--

यहाँ साइकिल दिखाई दे रही है और यहाँ एक साइकिल का--

चल रही है। पीछे की ओर एक ग्राउंड भी यहाँ से दिखाई दे रहा है।

और यहाँ एक बोर्ड लगा हुआ है जिसके ऊपर में में--

यह बस स्टैंड है और कई बसे यहाँ पर खड़ी हुईं हैं एक लाल कलर की बस दिखाई दे रही है एक नीले रंग की बस भी यहाँ दिखाई दे रही है।